एक शख्स गुलाबी कलर की शर्ट ब्लैक कलर की पैंट पहने हुए कुछ शूट करते हुए दिख रहे हैं।

और फर्श पूरी तरह से साफ है ए_सी लगा हुआ है छोटे-छोटे पंखे भी लगे हुए हैं।

एक महिला खड़ी होके देख रही है दो-तीन पुरुष आ जा रहे हैं एक साड़ी की दुकान है।

यह तस्वीर में एक--

जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है।

छोटे जंगल बड़े जंगल--

इस तस्वीर में हमें एक बनता हुआ घर दिखाई दे रहा है जिस पे छठ ढलाई का काम चल रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक शख्स दिखाई दे रहा है।

किडनी फेफड़ा लिवर गुर्दा--

रसोई ए फैमिली रेस्टोरेंट लिखा हुआ दिख रहा है।

इस तस्वीर में हमें--

बैलून लगाए हुए दिख रहे हैं काले कलर का सोफा है।

इस तस्वीर में हमें एक पेट्रोल पंप दिख रहा है।

सफेद कलर का ये रूम है।

यह तस्वीर विहामशाला यानी--

इस तस्वीर में हमें एक शादी का सीन दिखाया गया है जो कि --

बहुत लोग बहुत किस्म की चीजें--

तीन कुर्सियां रखी हुई हैजिस पे--

दो प्लेटें रखी हुई है।

उसमें कुछ भी नहीं है।

इस पे बोतलें भी रखी है।

बरी वरी पैर - पौधे--

दिखाई दे रहे हैं जो स्कूल जाने की--

दिख रहा हैकाफी अच्छा यह दृश्य--

इत्यादि दिखाई दे रहा है।

चॉकलेट खाते हुए दिखाई दे रही है।

जहां दो-तीन व्यक्ति खड़े हैं।

बादल पूरा साफ है।

अरहा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।